इस तस्वीर में एक ए_टी_एम मशीन दिख रही है जिसके बराबर में एक कूड़ा दान रखा हुआ है।

वो पीछे गेट लगा हुआ है जो व्हाइट कलर का है।

और इसमें आगे की ओर एक आदमी हैं जो हाथ धो रहा है और टंकी लगी हुई है।

इस तस्वीर में बहोत सारे चरखे रखे हुए हैं और तीन चार पांच दस कुर्सियां रखी हुई है।

और ये बहुत ध्यानपूर्वक योगा कर रही है।

पीछे मच्छरदानी और बैटरी भी रखी हुई है।

और लेडीज लेडीज का सामान रखा हुआ है।

यह एक मंदिर दिख रहा है जिसमें दो पंखे लगे हुए हैं और एक लाल कलर का गेट लगा हुआ है।

जिसमें बहुत सारे आदमी एयरपोर्ट एयरप्लेन में चढ़ रहे हैं।

वो पीछे जहां आदमी खड़ा हुआ है उसके जस्ट पीछे एक जंगला दिखाई दे रहा है और नीचे फर्श हुआ है।